और ये लड़का जुलतान शन। लाइका चढता न सन और औरी खूब मस्ती करत सन।

और जौन ई पेड़ बा पेड़वा पे पतिया हरियर हरियर बा औरे हेनिया एक घर बा।

कलर चारो चारो और पहिया निकाल निकाल दिए गईल बा। दुगो मिस्त्री खड़ा बा और ओकारे ओनिया एगो औरी कार बनाताटे। खूब ढेर सामान बाटे कार बनाये वाला।